डांसिंग हुआ इन लोग का यहां पर बैठें हैं और वो इसका फोटो बहुत बढ़िया है।

अनेक लोग आता है यहां पर और--

वालिंगबॉल खेल सकते हैं यहां अनेक लोग आता है यह वालीबॉल खेलने के लिए।

और ऑफिस में बहुत बढ़िया ही काम होता है।

प्रशांत जानवर देखते हैं दान भी है।

और बिस्कुट किसमिश सब है सब तरफ खाने का चीजे है।

यह एक बड़ा हॉल है इसमें बहुत सारा मीटिंग होता हैहम लोग देख रहे हैं।

कमी भी नहीं है और ये देखने में उतना अच्छा नहीं लेकिन ए.टी.एम. --